खड़ा हैं जिसने रेड कलर की टीशर्ट पहनी है और नीचे जीन्स पहना हुआ है पीछे काउंटर र --

यहां पर सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग है घर है।

वना बहु पर येलो कलर का पेंट है बाहर गेट भी लोहे का है और गेट पे लिखा --

टे टेक्स साल्ट हैं टेबल और चैअर रखे हुए हैं और बॉल --

करके और कुछ से बने होवे।

बाहर बहुत बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है और ऊपर आसमान दिख--

मिठाइयां रखी हुई है अलग-अलग कलर की--

लोहे का टेंट लगा हुआ है रोड लगी हुई है।

यहां पर सामने एक बड़ा सा रूम हैं।

और बहुत सारा सवाल लोहे की रैक लगी है।

अन्डर गार्मेंट्स की बॉक्स रखा हैं की बॉक्स राखी हुए हैं।

यहां पर सामने एक पेड़ दिख रहा है और पेड़ में बहुत सारे--

गोल्ड की और बहुत सारे लोग खड़े हैं जो--